दुकान है जोकि बुक्स के हैं चिल्ड्रंस बुक यहाँ पे बच्चों की बुक मिलने वाली है। यह छोटी-सी दुकान है एक साइड में भी दुकान है।

शादी का घर दिख रहा है जोकि बहोत खूबसूरत है। सजावट बहोत अच्छे से की गई है। लोग आना-जाना कर रहे हैं। फूलों की सजावट है।

बहोत सारे पेड़-पौधे और हरी पत्तियाँ दिख रही हैं। टहनियां दिख रही हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है और जंगल टाइप का दिख रहा है। उसमें बहोत ज्यादा कोई नहीं है। सभी लोग शायद कोई नहीं यहाँ पे ।

और बहोत बड़ा-बड़ा ड्रम दिख रहा है। बहोत सारे सामान फैला हुआ है और लकड़ियाँ भी दिख रही हैं। बांस भी गड़े हुए हैं और अभी मकान का --

और तरह तरह के डिज़ाइन में फूलदानी बना रहे है। टेबल है कोई पेंट कर रहा है तो कोई डिज़ाइन बना रहा है। कोई बच्चे देख रहे है। पीछे रेलिंग लगा हुआ है।